सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

सामने ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

इस पोस्टर पर एक मशीन भी छपी हुई है।

कुछ लोग दिखाइ दे रहे है।